ये मुझे नेवल लग रहे हैं जोकि एक लकड़ी पर बैठे हैं कुछ नेवल अल अलग देख रहे हैं कुछ दूसरी तरफ देख रहे हैं।

ये एक लेडिस सामान की दुकान हैं जहाँ पर लेडिस सामान मिलता हैं। यहां पर तीन लड़ एक लड़की और तीन आंटियां खड़ी हैं।

और यहाँ पर वो सामना मिलता हैं जो औरतें कहीं भी डालती हैं और बालों मे लगती हैं।

ये एक पूजा स्थल हैं। जिसे मंदिर कहते हैं। यहाँ पर काफी सारे लोग पूजा करने आते हैं और यहाँ औरत औरते भी हैं और आदमी भी हैं।

ओर यहाँ पर सरिया मसाला बना कर इस घर को बना रहे हैं और --

जोकि बहुत खूबसूरत है लड़का और ये यहाँं पर पीले रंग की नाव खड़ी है और एक औरत भी जा रही हैं।

और ये आदमी उसके बाल काट रहा हे यहां पर बोहोत अच्छे बाल काटे जाते है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी कटवा के आऊ। यहा पर --

ये एक जिम का फोटो हैं। जो लड़का सीट पर लेट कर थाई लगा रहा है।

ये किसी ऑफिस का फोटो है जहां पर एक आदमी बेठ कर ऑफ़िस का काम कर रहा है।